और कई लोग यहां पर रुक कर उसे ले रहे हैं।

और यहाँ आसपास वेटलिफ्टिंग और कई प्रकार के सामान रखे हुए हैं।

और आसपास बैंक सेंट्रल ह बैंक भी है।

सब कारपेट बिछाकर योगा कर रहे हैं।